और उसका ऊपर में बोका कलर का बदला भी छाया हुआ है।

और आदमी लोग सफेद कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

और उसका बीच में एक कोना पेड़ जैसा--

इ फोटो में एक दुकान दिखाई दे रहा है।

पानी के किनारे में बहोत सारा जंगल है।

दुकान का अंदर में टूथ ब्रश भी दिखाई दे रहा है और फेवीक्विक --

ये फोटो में एक आदमी पानी पी रहा है।

ये फोटो में एक लंबा सा वरांदा दिखाई दे रहा है।

जिसमें बहुत सारा लड़कियां है।

और यहां में टेबल का ऊपर कुछ सामान रखके है।

घर का पीछे में वॉल भी बनाया हुआ है ब्लैक कलर का।

चार जगह में क्लिप लगाके है रेड कलर का।

रस्ता का किनार में अलग अलग रंग का फ्लैग लगाया हुआ है।

और उसका सामने में भी बहुत छोता छोता घर लोग भी है।

और एक टी_वी के ऊपर में सुपर भी लिख के है।

और बरा वाला घर का सामने में बरा बरा पेड़ लोग है।

ये घर में दो तरफ से कुछ फोटो भी चिपकाए हुआ है।